यह फोटो में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है।

की वह रास्ता पहाड़ों के बीच है।

इस पे लिखा है एस_बी_आई ।

एक ठो वार्डरोब भी है।

के नीचे टेबल भी रखे गए हैं।

और सामने हरी भरी जंगल और पेड़ भी दिख रहे हैं।

एक ठो व्यक्ति भी खड़ा है।

यह फोटो में एक बड़ा सा गेट दिख रहा है।

यह फोटो में कई सारे किताबें की कलेक्शंस दिख रही हैं।

यह फोटो में बड़े बड़े लोहे दिख रहे हैं।

लग रहा है वह कैंपिंग करने जंगल गए हैं।

ऊपर में लाइट भी जल के है।

इन कार्टूनों में सिस्का एल_इ_डी लिखा गया है।